ये एक रूम है रूम के अंदर लाइब्रेरी है लाइब्रेरी में बहुत सारे कॉपी पुस्तक है जोकि बच्चों के लिए और सबके लिए भी पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है महत्वपूर्ण हैं।

यह एक नदी है नदी के किनारे हरा- भरा पेड़ -पौधे हैं नदी के किनारे बहुत बड़ा चट्टान है आसमान है आसमान का रंग आसमानी है।

नदी में मगरमच्छ आदि कछुआ सब रहते हैं।

बाईक है दुकान सब है घर का कलर सफेद है घर में खिड़की दरवाजा--

यह एक घर है यह दो कलर में लिपाया गया है लाल और सफेद इसमें दो दरवाजे हैं ।

यह एक घर है जिसका सजावट बहोत ही अच्छे तरीके से किया गया है और इसका कलर गोल्डन है और रेड है और सामने पेड़-पौधे है और रोड है औ--